यहा पर एक स्टेशन है स्टेशन मे एक दुकान भी है और यहा पे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं बहुत सारी लाइट्स जल रही है।

यहाँ पर अ बहुत सारे पौधे हैं पौधे में एक अमरूद है और अमरूद को लेकर एक आदमी हाथों में लिए फोटो खींचा रहा है।

यहाँ पर एक पहाड़ी एरिया है यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे पथर है पहाड़ जेसे बड़े से है यहाँ पर कुछ पानी भी जमा हुआ है।